पहाड़ है | पहाड़ पर छोटे-छोटे कई पत्थर पड़े हुए है | वहां पर दो व्यक्ति है | गुफा जैसा हल्का बना हुआ है वहा पे --

और नदी के उस पार पाह पेड़ दिख रहें हैं और नदी --

एक बड़ा सा हॉल है हॉल में जिम करते वक्त कुछ व्यक्ति दिख रहे हैं एक व्यक्ति बैठा है एक व्यक्ति जिम की मशीन के पास खड़ा है।

घड़ी पहने हुए है और लोअर पहने हुए है और बनियाइन कमीज पे खड़ा है। पंखे लगे हुए हैं। लाइट जल रही है। कलर मेटेरि --

मछली मार्केट है यहाँ पे कई सारी बड़ी -बड़ी मछलियाँ दिख रही हैं और कतार में रखे हुए हैं और कतार में मास्क लगाए हुए --